नीचे बच्चे लोग खेल रहे है।

ई बस को ई को पिंक कलर मे लिखा गया है।

लड़का ब्लू कलर का ड्रेस पहना हुआ है।

ये एक पिकनिक स्पॉट है यहां पे बहोत सारा पहाड़ी दिख रहा है कुछ--

नीचे रास्ता है। साइड में रेड कलर का--

सारी चीज का इलेक्ट्रिकल सामान और रेफ्रिजरेशन का सर्विसिंग किया जाता है।

येलो कलर फ्लॉवर्स पिंक कलर फ्लॉवर्स है।

ये एक होटल का पिक्चर है यहां पे बहुत सारा चेयर रखा गया है जो कि व्हाइट कलर में दिख रहा है।

और यहां पे येलो कलर का--

येलो कलर के में कुछ लिखा गया है।

ये एक पांडा मोटर ड्राइविंग कार है जो कि वाइट कलर का है।

ये एक स्कूल रूम की तरह दिख रहा है यहां पे बहोत सारे चेयर पड़े हुए हैं।

व्हाइट कलर पेंट ब्राउन कलर का पेंट किया गया है।

यहां पे बहोत आदमी इकट्ठा बैठ के योगा कर रहे हैं।

यहां पे सिस्टम रखा गया है।

और व्हाईट कलर का चिड़िया नजर आ रहे हैं और नफीस यहां पे बैट पकड़ कर अंदर आ रहा है और ये हंस भी रहा है।

केले का पेड़ लगाया हुआ है बांधा गया है यहां पे बेलून से सजावट की गई है।

जोकि तक नहीं हुआ है।

गाड़ी सब खाली है कोई आदमी नहीं है पिंक कलर का बिल्डिंग है।

यहां पे कुछ पेड़ भी दिख रेया है।

ये खाली रास्ता पड़ी हुई है यहां पे बहोत सारा पेड़ साइड में--

पेड़ यहां पे शो कर रहा है।